और यहाँ पर एक अति दिख रहा है जिसपे पर्यटन एक मशीन दिख रहा है जिससे आर पार हम लोग किसी खाई किसी पहाड़ के आर पार हम जाते हैं उसी के लिए एक ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम आसानी से सुविधा से कहीं भी दूर भी लम्बा चौड़ा जो खाई वगैरा होता है पहाड़ वहाड़ उसके आर पार हम जा --